निचे में सीढ़िया है कुछ लोग खड़े है बाइक खड़ी हैं स्कूटी खड़ी हैं बिजली के तार हैं।

टीन का सेट डला हुआ है मकान है बीम कालम खड़े हुए है एक मकान में खिड़की नजर आ रही हैं।

मशीन रखी हुई है हर बैड के नीचे तीन-तीन बाल्टीया रखी हैं एक मग्गा रखा हुआ है।